ये एक मेडिकल हॉस्पिटल है। यहाँ पे नर्सेस हैं डॉक्टर है डॉक्टर अपना इलाज करा कर रहे हैं पेशेंट लोगों का।

उम्म एरिया का ही है। फर्स्ट क्लास है बहुत अच्छा है। सबलोग खेल रहे हैं। खेलना चाहिए। वर्कआउट --

ये कपड़े की शॉप है जहां पे कोट पैंट बकायदे बहुत कुछ लगा है।

पुराने जमाने का है। शॉप भी बहुत अच्छा है। हम्म बहुत अच्छा है ये तो देखने से लग रहा है। ह --

गोरखपुर रोड शाखा देवरिया हम्म गोरखपुर रोड पे है। बहुत अच्छा है। मेन रोड पे ही है लग रहा है।

ये एक यूनियन बैंक का ब्रांच है। कोकाकोला का बना --

यह एस.बी.आई. का हेड ब्रांच है। जिओ का बैनर लगा है।